synfig का उपयोग करके basic bone animation के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम synfig में skeleton ऑप्शन का उपयोग करके एक कैरेक्टर को एनीमेट करना सीखेंगे
हम bones जोड़ना भी सीखेंगे
शरीर में bones जोड़ना और bones को एनीमेट करना
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu linux 1404 os
synfig वर्जन 102
अब आइए शुरू करते हैं हम synfig में हैं
मैं synfigcharacter फाइल खोलूंगी जो मेरी मशीन पर सेव है
यह फ़ाइल आपको code files लिंक में मिल जाएगी कृपया इसे डाउनलोड करके उपयोग करें
सुनिश्चित करें कि शरीर के सभी हिस्से अलगअलग लेयर में हों
अब हम skeleton का उपयोग करके निश्चित जोड़ों के साथ शरीर के ऊपरी भाग को रिग करना सीखेंगे
इससे पहले हमें ग्रुप बनाने होंगें उदाहरण के लिए बायाँ हाथ बाईं ऊपरी भुजा बाईं निचली भुजा और बाईं हथेली को मिलाकर बनाया जाना चाहिए
इसके लिए हमें इन तीन लेयरों को ग्रुप करने और इसे lhand नाम देने की आवश्यकता है
इसी प्रकार अन्य लेयरों को ग्रुप करें
इन group layers को यहाँ दिखाए गए अनुसार lhand rhand head neck और trunk नाम दें
आइए save as विकल्प का उपयोग करके इस फाइल को सेव करते हैं
file पर जाएं और save as पर क्लिक करें
अपनी पसंदीदा लोकेशन चुनें और फिर फ़ाइल के नाम में basic hyphen bone hyphen animation टाइप करें
फिर save बटन पर क्लिक करें
layers panel पर जाएं
इन सभी ग्रुप की गई layers का एक और समूह बनाएं और इसे character नाम दें
अब त्रिभुजाकार आकृति पर क्लिक करके character समूह को खोलें
character layer की शीर्ष लेयर पर राइटक्लिक करें
new layer फिर other पर जाएं और skeleton पर क्लिक करें
हमें canvas पर एक bone मिल जाती है
transform tool पर क्लिक करें और bone का हरा बिंदु चुनें
माउस को दबाकर ड्रैग करें और bone को कैरेक्टर के trunk भाग में ले जाएं
अब bone को दिखाए गए अनुसार रखें
फिर bone की लंबाई समायोजित करने के लिए bone के orange बिंदु का उपयोग करें
इसके बाद bone के नारंगी बिंदु पर राइटक्लिक करें
और फिर create child bone विकल्प पर क्लिक करें
पूर्व में बताए गए अनुसार trunk के ऊपरी भाग में child bone की लंबाई समायोजित करें
इसी तरह गर्दन सिर और हाथों के लिए bones को जोड़ें और समायोजित करें
अब skeleton layer को शरीर के अंदर रख दिया गया है
फिर हम bones को शरीर के प्रत्येक हिस्से से जोड़ेंगे
इसके लिए layers panel पर जाएं rupperarm layer पर राइटक्लिक करें और फिर select all child layers पर क्लिक करें
canvas पर जाएं shift कुंजी का उपयोग करके दाईं ऊपरी भुजा के सभी नोड्स चुनने के लिए माउस को दबाकर ड्रैग करें
ctrl कुंजी दबाएं और फिर skeleton layer चुनें
rupperarm की bone के किसी भी node पर राइट क्लिक करें
link to bone विकल्प पर क्लिक करें
इसी तरह हमें link to bone का उपयोग करके शरीर के हर हिस्से को इसके संगत bone से लिंक करना होगा
शरीर के हर हिस्से को skeleton से जोड़ा जाना चाहिए
इसके बाद ही हम bones का उपयोग करके शरीर के सभी हिस्सों को एनीमेट कर सकते हैं
फ़ाइल को सेव करने के लिए ctrl और s कुंजी दबाएँ
आइए अब एनीमेट करना शुरू करते हैं
layers panel पर जाएं और skeleton layer चुनें
animate editing mode आइकॉन को on करें
time track panel पर जाएँ और cursor को 20
विभिन्न रंगीन बिंदुओं का निरीक्षण करें
नीला बिंदु रोटेशन के लिए है
नारंगी बिंदु स्केलिंग के लिए है
और हरा बिंदु skeleton में विस्थापन के लिए है
आइए canvas पर चलते हैं
bone का नीला बिंदु चुनें जो दाएं हाथ के निचली भुजा वाले हिस्से में है
दिखाए गए अनुसार नीले बिंदु को स्थानांतरित करके निचली भुजा bone को खिसकाएँ
time track panel पर जाएँ और cursor को 32
canvas पर वापस जाएं और निचली भुजा bone को दिखाए गए अनुसार खिसकाएँ
पुनः time track panel पर जाएँ और cursor को 48
canvas पर वापस जाएं और निचली भुजा bone को दिखाए गए अनुसार खिसकाएँ
फिर उसी फ्रेम पर हथेली bone का नीला बिंदु चुनें
फिर हथेली bone को दिखाए गए अनुसार खिसकाएँ
एक बार पुनः time track panel पर जाएँ और cursor को 63
canvas पर वापस जाएं और निचली भुजा bone को दिखाए गए अनुसार खिसकाएँ
हम lhand को इसी तरह एनीमेट करेंगे
canvas पर वापस जाएं और बाएँ हाथ की निचली भुजा bone का नीला बिंदु चुनें
time track panel पर जाएँ और cursor को 20
canvas पर वापस जाएं
नीले बिंदु को ड्रैग करें और बाएँ हाथ की निचली भुजा bone को दिखाए गए अनुसार खिसकाएँ
अंत में turn off animate editing mode आइकॉन पर क्लिक करें
canvas के निचले हिस्से में seek to begin पर क्लिक करें
play बटन पर क्लिक करके एनीमेशन चलाएं
एक बार पुनः फ़ाइल को सेव करें
आइए अब पूर्वावलोकन करके देखते हैं
file पर जाएं और फिर preview पर क्लिक करें
quality को 05 और frame per second में 24 सेट करें
preview बटन पर क्लिक करें और फिर play बटन पर क्लिक करें
हम स्क्रीन पर एनीमेशन का पूर्वावलोकन देख सकते हैं
आइए preview विंडो बंद करते हैं
अब आइए एनीमेशन को रेंडर करते हैं
ऐसा करने के लिए file पर और फिर render पर क्लिक करें
render setting विंडो पर जाएँ
choose पर क्लिक करें और save render as विंडो खोलें
फ़ाइल सेव करने के लिए लोकेशन चुनें मैंने desktop चुना है
फ़ाइल का नाम बदलकर basic hyphen bone hyphen animation dot avi करें
target ड्रॉपडाउन मेनू पर क्लिक करें और एक्सटेंशन के रूप में ffmpeg चुनें
time टैब पर क्लिक करें और end time को बदलकर 70 करें
अंत में render पर क्लिक करें
अब हमारे एनीमेशन को चलाकर देखते हैं
desktop पर जाएँ और basicboneanimation avi चुनें
राइटक्लिक करें और firefox वेब ब्राउज़र का उपयोग करके एनीमेशन चलाएं
इसके साथ ही यह ट्यूटोरियल समाप्त होता है आइए सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने synfig में साधारण bone एनीमेशन के बारे में सीखा
हमने bones जोड़ना bones को शरीर में जोड़ना और bones को एनिमेट करना भी सीखा
यहां आपके लिए एक असाइनमेंट है
code files लिंक में आपको प्रदान की गई synfig फ़ाइल खोलें
bones जोड़ें और हाथ को एनीमेट करें
आपका पूर्ण किया हुआ असाइनमेंट ऐसा दिखाई देना चाहिए
निम्नलिखित लिंक पर मौजूद वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है कृपया इसे देखें
हम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं आयोजित करते हैं और प्रमाण पत्र देते हैं कृपया हमसे संपर्क करें
कृपया अपने समयबद्ध प्रश्न इस फ़ोरम में भेजें
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है
यह ट्यूटोरियल इं अमित कुमार द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं ज्योति सोलंकी आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद